तालाब के ऊपर कुछ चिड़िये भी मछली पकड़ती हुई नज़र आ रही हैं।

जहाँ पर बड़ी-बड़ी मूर्तियां नज़र आ रही हैं।